ओर खेत बने हुएँ हैं। घाँस दिख रही है। सैटेलाइट लाईट लगी हुई हैं। बड़े-बड़े लाइट्स लगी हुईं हैं। बहोत कुछ दिख रहा है। और भी ब --

यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ वाईट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ब्लू कलर के ब्लुन्स और वाईट कलर के बलुन्स लगे हुए हैं।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं। ताड दिख रहे हैं। बाइक खड़ी है। नीचे ओरेंज कलर है और वाइट कलर का घर बना हुआ है। थोड़ी सी घांस लगी हुई है।

जहाँ पे कुरकुरे दिख रहे हैं ग्रीन कलर है रेड कलर है हरा कलर है पिंक कलर है। फ्रीज दिख रहा है वाइट कलर का। लोहे की सीढ़ियाँ की बनी हुई हैं और किराने का बोहोत सारा सामान दिख रहा है ऊपर लाइटस लगी हुई हैं नीचे भी लाइट्स लगी --

बहुत सारे लोग दिख रहे है| बहुत सारी भीड़ दिख रही है| कई लोगों ने मुंह ढाका हुआ है।